यहाँ पर एक गिरिल भी लगा है साइड मे जोकि बहुत अच्छा लग रहा है।

ये पीक एक मॉल की है जो मॉल बहुत जादे अच्छा बना हुआ है जिसमें हमे कई सारे कपड़े लगे हुए दिखाई दे रहें औ ये लेडिस् कपड़े लगे हुए हैं।

यहां एक आदमी किताबे बेच रहा है जोकि बैठा है जिसके पास बहुत अच्छी-अच्छी किताबे है।

इस आदमी ने स्वेटर पहन रखा है और ये एक किताब घर में काम करता है।

ये तस्वीर पुराने मंदिर की है जिसमें एक तरफ हमें पुराना मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है और एक तरफ ब बगाईचा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बाल्टी सिंदूर और पूजा की सारी सामग्री इनका सिंहासन भी बहुत खूबसूरत और अच्छा लग रहा है जो की बा और हरे रंग का है जो इसकी शोभा को बड़ा रहा हैऔर इसके आगे पानी भी रखा हुआ है।

ये पिक हमे एक मेले की दिख रहीं है जिसमें बहुत सारे लोग एक ओर जाते हुए दिख रहें है जिसमें शामियाने वगैरा लगे है और एक बड़ा मैदान --

जिसमे बहोत अच्छी-अच्छी मूर्ति है जिसमे न सिर्फ बुद्धा की रामायण की भगवान शिव पार्वती की और --